ये लड़के लोग क्लास है। बहोत सारे लड़के लोग--

यह तस्वीर रात के वक्त की है बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और--

ये एक स्कूल है और यहां पर बहोत सारे बच्चे डांस की प्रैक्टिस कर रहे और--

ये एक होटल है होटल में दो आदमी बैठे हुए हैं एक--

ये एक रास्ता है रास्ते पर एक आदमी खड़ा हुआ है आस पास बहोत सारे दरफ्तो लगे हुए हैं और--